यहां ये बहोत सुंदर सा पैलेस है। बहोत सुंदर जगह है। घर बहोत सुंदर है बहोत बड़ा है।

यहाँ पे लोग जिम --

ये बहोत ही सुंदर सा झरना है।

ये एक कपड़े की दुकान है।

ये एक स्विमिंग पूल है। वाटरपार्क जैसा बहोत अच्छा है बहोत साफ़ सुथरा है।

यहाँ लोग आते हैं इंजॉय करते हैं।

प्रेयर करते हैं मांगते हैं दुआ मन्नत --

ये भैस है। भैस का तबेला है।